काफी अच्छा केबिन है।

ये तो बहुत ही बार --

यहाँ पर बच्चे इंटर हाई स्कूल करने के बाद में आइ.टी.आई. करते हैं। यह सरकारी --